यह तस्वीर एक लाइब्रेरी की नजर आ रही हैं यहां पर लाल और सफेद पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक औरत जाती हुई नजर आ रही है।

पहाड़ों की नजर आ रही है।

यह तस्वीर में एक भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक गाय सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

स्टॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लाल रंग का सूट पहने खड़ी नजर आ रही है।

वे एक गंजा व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा दिखाई दे रहा है वे दीवार पर बहुत सारे पोस्टर लगे--

यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक अह शॉप की नजर आ रही है।